यह एक इलेक्ट्रिसिटी की दुकान है।

काफी सारी रोज बन रही है उनके अन्दर ये डिब्बे रखें हुये है।

और कुछ बरकट्ठा यहां पे बैठे हुए हैं और एक मालिक बैठा हुआ है।

और जो बाल पर डाई लगा रहा है वो मास्क लगाकर कर रहा।

और ये काफी देखने में अच्छी लग रही है।

एक टोकरी में भरे हुए हैं कुछ कैरेट्स में भरे हुए हैं।

दो के हाथ ऊपर को खड़े हुए हैं एक का हाथ मुडा हुआ है।

ये सारे बच्चे शाम के टाइम में इस ग्राउंड में खेल रहे हैं और सामने बहोत पेड़ है।